और इसमें डेकोरेशन हो रहा है और एक लड़का सीढ़ी लगा के खड़ा है।

तीन अदमी खड़ा है दो आदमी बैठा हुआ है।

उसके ऊपर लाइट जल रहा है और बगल में गाछ-वृक्ष है दो अदमी बाइक से जा रहा --

रोड है रोड के बगल में घर है घर के बगल में बहोत सारा है।

सब कलर का पेंट रखा हुआ है।

बहोत सारा तीन चार पटरी है और एक--

और ऊपर टी_वी है उसमें बता रहे हैं।

बैठ के पढ़ रहा है कुर्सी लगा हुआ है।